इस चित्र में कुछ लड़के फोटो खिंचवाने के लिए पोज देते हुए नजर आ रहे हैं ।

ये बाइक शो रूम का चित्र है जहां पे एक ब्लू कलर की बाइक के पास एक वाइट कलर का शर्ट पहने हुए बंदा खड़ा है।

और जो छतरी लगे हुए हैं उसका पर्दा ब्लू पीला और ग्रीन कलर का है।

और यहां पे रंग बिरंगे कपड़ों से पूरा मार्केट सजा हुआ है लोहे कि रेलिंग दिख रही है।

यहां कागज का कतरन भी रखा हुआ है संतरा के पास अस्सी रुपए लिखा हुआ एक बोर्ड भी दिख रहा है।

और इसके पीछे क्या जो टीन है वो ब्लू कलर और वाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

कुछ पीले फूल है कुछ ऑरेंज फूल है प्लास्टिक के व्हाइट बोरे के अं बोरे में रखे हुए हैं।

ये टायर की दुकान का चित्र है जहां पर ढेर सारी बड़ी बड़ी टायरे रखी हुई है।

जिसके बाहर में कुछ लोग आते जाते हुए नजर आ रहे हैं और दो टू व्हीलर खड़ी हुई है।

बगल का दिवाली येलो कलर से कलर किया हुआ है और पीछे के दीवाल को शीशे से बनाया गया--

ये भारतीय स्टेट बैंक का लोक सेवा केंद्र नजर आ रहा है ऊपर में भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

दुकान के पीछे में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं और एक एंगल से बना हुआ टावर भी है।

जोकि अ एक जालीनुमा चादर से ढका हुआ है।

घोड़े का रंग ब्राउन कलर का है उसके पीछे में रंग-बिरंगी चित्रकारी की हुई नजर आ रही है।

शीशे का द दरवाजा है और शीशे का ही दीवाल है दीवाल पे लाल और पीले रंग का पर्दा लगा हुआ है।

और वो भी रेड कलर से पेंट किया हुआ है।

अंदर स्टील का ड्रम नजर आ रहा है।

चिप्स कुरकुरे का पैकेट टंगा हुआ है।